रेलिंग भी लगी हुई हैं और निचे कोटा लगा हुआ है।

यहाँ पे बाल बाड़ी करके है सेलून है। बालबाड़ी करके सेलून है।

यहाँ पे उस स्कूलस् के बच्चे हैं।

लंच नहीं ये कोई वर्क कर रहे हैं कुछ काम कर रहे हैं। एक मास्टर है वो ऊपर देख रहा है। छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं जो ग्रुप बनाके --

यहाँ पे एक गेट लगा हुआ है जोकि कथ्थई कलर का गेट हैं।

और उसके ऊपर तीन बोर्ड लगे हुए है।

जो कि तीनो पे कुछ-कुछ लिखा हुआ है।

और शॉप है ये कपड़ो की शॉप है। स्वेटर वगेरो की शॉप है क्युकी स्वेटर लगी हुई हैं। पुतलो पे लेडिस स्वेटर है।

नीचे पेकिंग में भी कुछ-कुछ सामान रखे हुए हैं। कपड़ो के सामान हैं सब।

यह सिटी कैफे है और यह हब --

इसपे बाहर बाउंड्री पे पुतला-पुतली भी बने हुए है। कार्टून बने हुए है। बीच में शटर का गेट है।

मैडम भी ऊपर एक पेज लेके कुछ लिखके दे रही है उनको गुलाबी कलर का पेज रखे हुए--

में एक खंभा भी लगा हुआ है जो कि लाईट का खंभा है। लाईट का।

और एक हैंडपंप भी दिख रहा है थोड़ा सा। रोड दिख रहा है गाड़ी बाइक दिख रही है।

ताप कर रहे हे और कुछ लोग और खड़े भी है जो कि लगता है ऑफिस है।

बड़े पेड़ भी लगे हैं जो के हल्के-फुल्के दिख रहे है। उसके कारन कम दिख पा रहे हैं। कुछ लोग बेठे हुई हैं नीचे ज़मींन पे।

यहाँ पे एक ट्राली एक टैक्टर पर खड़ा हुआ है। जो कि टैक्टर के पीछे--

यहाँ पे ओरइ का बोर्ड लगा हुआ है। ओरइ का --

यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जो कि एस_बी_आई का बोर्ड लगा हुआ है।

उनके ऊपर लेपटोप रखे हुए हैं। काफी ज्यादा लेपटोप रखे हुए हैं बेंच के ऊपर --